और टेबल के एक पीछे कुर्सी है। उस पर एक पीले रंग की शर्ट पहने हुए व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। उसके जस्ट कुछ ही दूरी पर बोहोत सारे बच्चें --

बतख बना हुआ और इसकी साइड कई सारे पेड़-पौधे भी बने हुए हैं।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

यह एक चित्र है और इस चित्र में एक सड़क --

इस पे लिखा हुआ है ई.सी.जी.ई.ई. ।

गार्डन के आस पास दो बड़े टावर भी है और उसमें उसके पास घर --

अपने स्कूल की ड्रेस में बैठे हुए हैं। जिसमें कुछ बच्चे रंगीन ड्रेस में चेयर पर भी बैठे हैं। इसमें एक बच्चे स्टेज पर बैठे है।

यह एक चित्र है और इस चित्र में एक सड़क पे मोर दिखाई दे रहा है। मोर का रंग --

घास दिखाई दे रहे हैं जिसमें कुछ दूरी पे एक --

गाड़ियां खड़ी है जिसमें एक रिक्शा है। रिक्शे पे दो लोग बैठे हुए भी है।

और गाड़ी के नीचे एक बाल्टी भी रखी हुई है। गाड़ी को साइड में रखा गया है और गाड़ी के जस्ट पीछे एक घर भी दिखाई दे रहा है।

मिथिला बुक सेंटर है। इस बुक सेंटर के पास दो लोग बैठे हुए और दो लोग खड़े दिखाई दे रहे --

यहां एक चित्र है और इस चित्र में एक मॉल को दर्शाया गया है। मॉल के अंदर कई सारी वस्तुएं है।

इसमें कुछ वस्तुएं मॉल के बाहर भी रखी हुई हैं और कुछ चीजे अंदर भी रखी हुई हैं।